और जे यहाँ पे बेंच भी बना हुआ है बैठने के लिए।

बहुत सुन्दर सुन्दर का इसमें का बहुत पुराना भी घर दिख रहा है जिसका पेंट प्लस्तर सब ख़राब हो गए हैं।

पंप है और यह इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है | उपर लोगो लगा हुआ है रेड कलर से और --

यह विश्वविद्यालय का सीन है यहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय लिखा हुआ है विद्यार्थी सहायता केंद्र है यह।

और वेस्ट बंगाल का सीन है उपर घड़ी लगा हुआ है ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है उजला कलर से भी पेंट किया हुआ है घर का।

अपना बिलडिंग दिख रहा है यहाँ पे पहले हो सकता है स्कूल रहा हो बहुत पुराने जमाने का दिख रहा है कुछ टूट के गिर भी रहा है नीचे ।

कार का गेरेज है गेरेज में एक कार लगा हुआ है चक्का खोल के रखा गया है बरनोट खुला हुआ है ।

बगल मे जे.सी.बी. दिख रहा है देखने मे सुंदर है चारो तरफ हरियाली है पेड़-पौधे है हरे-भरे है ऊपर आसमान दिख रहा है।